और एक गोल चक्कर का भी झूला है।

ये बहोत अच्छा होटल दिखाई दे रहा इसमें बहोत अच्छी सजावट है।

और बड़े बड़े बोर्ड भी दिखाई दे रहे--